इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यह पर एक ये कार खड़ी हैकार का रंग सफ़ेद है पीछे की तरफ--

इस द्रिश्य में हम देख पा रहें हैं यह एक बहुत बड़ा सा मैदान है और यहाँ पर देखिए जमीन में कहीं-कहीं पर घास उगी हुई है बराबर में एक बड़ा सा --

गिटार रखे हुए हैं सामने दीवार पर बहुत सुन्दर-सी डिजाईन बन हुई हैं।

कुछ मछलियाँ बहुत छोटी हैं और कुछ मछलियाँ बड़ी हैं यह पर देखिये बहुत सारे आदमी हुए हैं।

और किनारे कि तरफ हीना टैटू का बोर्ड चिपका हुआ है जहाँपर देखिये बहोत सारे टैटू बहोत सारा सामान लटकता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ गाडिया खड़ी हुई दिखाई दे रही है ब-अ बराबर में ही एक बैंक ऑफ़ बरोदा है जहा पर देखिये बाहर की तरफ गाड़ियां खड़ी है ऊपर की तरफ झोपड़ियाकार की एक छत्त बनी हुई है।

इस दृशय में हम देख पा रहे ये किसी रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य है जहा पर देखिये ये मेज और कुर्सियां पड़ी हुई है यहां पर देखे सामने की तरफ दिवार में अलमारियां बनि हुई जिसमे बोतले रखीं हुई दिखाई दे रही है।

दृश्य हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिये ये एक बहौत चौड़ा सा रास्ता है जहाँ पर देखिये ये पट्टियाँ बनी हुई हैं थोड़ी-थोड़ी दूर पर यहाँ पर हर पट --

कब यहां पर बाहर की तरफ गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है बरा-बरा की दुकान के बाहर कुछ बाल्टियाँ रखी हुई हैं और ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ दिखा दे रहा है।

इस दृश में हम देख पा रहे है ये किसी पार्क का दृश्य है जहा पर देखके ये झूला पड़ा हुआ है यहां पर देखे दूर पर बड़े-बड़े से --

दिखाई दे रहे है यहां पर सभी नागफनी के ऊपर कांटे लग जैसे लगे हुए हैं।

इस दृश में हम देख पा रहे है यहाँ पर एक कमरा है जिसमें देखे यहां पर ये एक बहुत बड़ा सा बिजली विभाग दिखाई दे रहा है जिस --

जैसा कि इस दृश्य में देख पा रहे हैं यहां पर एक फल की दुकान है यहां पर बहुत सारे फल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने--